यहां पर बहोत सारे अलमीरे बने हुए हैं।

जहां पर बहोत सारे मिठाई रखे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारे फैन भी लगे हुए हैं लाइट भी लगी हुई है।

और यहां स्विचबोर्ड भी दिख रहा है।

जोकि ग्रीन कलर की है इस्काई ब्लू कलर की है।

यहां पर एक कछुआ भी बना हुआ है।

यह एक क्लासरूम का दृश्य है ।

यहां एक टीचर भी है जो कि ब्लैक कलर की साड़ी रेड कलर की ब्लाउज पहनी हुई है।

और नहा रहा है हाथी के ऊपर एक आदमी भी है।

यहां पर न्यूज़ पेपर भी रखा हुआ है।

यहां पर सीढ़ी भी लगी हुई है एक पर भी चल रहा है ।

यहां दो लोग नहा रहे हैं यहां बहुत सारे पत्थर भी हैं।

और वॉल का कलर भी वाइट है।

यह एक मार्केट है जहां पर सब्जी की दुकान लगी हुई है।

एक आदमी है जो पुशअप कर रहा है जो कि पिंक कलर का टी शर्ट पहना है।

और बहुत सारे घास भी उगे हुए हैं सभी लोग बैग टांगे हुए हैं।

टेबल के ऊपर जग बोतल नमक का डब्बा टिशू पेपर रखा हुआ है ।

यह रांची डेंटल एंड हेल्थ के का क्लिनिक है।

जोकि लोहे की है यहां बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं।

और अंदर में एक कम्प्यूटर भी रखा हुआ है।

यह एक इस्टेज का दृश्य है।

और बोतल रखे हुए हैं एक कफ रखा हुआ है एक ट्रे रखा हुआ है।

यहां स्टील का स्लाइडर भी लगा हुआ है।

और यहां बहुत सारे बैनर लगे हुए हैं।

जो ब्लू कलर की है यहां बहुत सारे आदमी भी हैं।

एक कैरट भी रखा हुआ है यहां बहुत सारे लोग भी हैं।